शिक्षा अधिकारी कार्यालय लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

व्यक्ति खड़े हुए नज़र आ रहे हैं एक महिला है एक पुरुष है।

हमें एक सड़क दिखाई दे रही है।

जिस पर मां शीतला भव्य पूजा लिखा हुआ है।

यह दुकान बड़ी भव्यता से सजाई गई है।

हमें एक मैदान नज़र आ रहा है साथ ही एक बड़ा भवन भी दिखाई दे रहा है।

अंदर लाइट आई हुई दिखाई दे रही है और हमें चिड़िया भी नज़र आ रही है।

आसमान में चमचमाता सूर्य दिखाई दे रहा है।

दुकान के अंदर हमें एक पंखा नजर आ रहा है साथ ही कांच लगा हुआ दिख रहा है।

रात्रि का समय है और एक हमें इमारत नज़र आ रही है।

हमें एक बड़ा भवन नज़र आ रहा है जिस पर लाइट लगी हुई है साथ ही एक बड़ा भव्य--

--दीवाल पर तितली की पेंटिंग बनी हुई है साथ ही मुख्य द्वार पर भी एक फूल पेंटिंग हमें दिखाई दे रही है।

साथ ही हमें बड़े-बड़े झाड़ नज़र आ रहे है जो बहोत सुंदर लग रहे है और मैदान भर धूप भी दिख रही है।

साथ ही हमे डॉक्टर मोनिका पाटिल नाम का एक बोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा है एक बल्ब दिख रहा है।

हमें एक बड़ा हॉल नज़र आ रहा है साथ ही हमें बड़े-बड़े स्तंभ दिखाई दे रहे है।